और सामने जंगले हैं दो पांच पांच जंगले हैं।

पानी आ रहा है इस गंदे पानी में कुछ सफेद सफेद--

और यहां पर धूप और ठंडी हवा भी है।

कुछ सफ़ेद और येलो भी लगी हुई हैं और बोहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

और गमले रखे हुए अच्छी और येलो कलर की लाइट --

और कुछ टेबल है जिस पर बैठकर यह व्यक्ति कपड़े सीता है।

पटरों के ऊपर बहुत सारे कट्टे रखे--